झंडा है लगाया हुआ ऊपर में अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

यहां पे दूल्हा और दुल्हन बैठी हुई है।

अगल बगल पे छोटे छोटे फूल लगाया हुआ हैं रंग बिरंगे का।

बच्चे का बहुत सारा कपड़ा हैंगर में टांगा हुआ है।

बड़ा सा नाव है नाव व्हाइट कलर का है आसमान पूरा ब्लू है।

चार्टर लगाया हुआ है शटर ग्रीन कलर का है।

यहां पर रोड का दृश्य दिख रहा है रोड पर दो भैंस चल रही है।

अगल बगल कुछ घरे बनाई हुई है बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं।

यहां पर जंगल का दृश्य दिख रहा है जंगल में कई सारा बड़ा बड़ा पत्थल है।

लाइट लगाया हुआ है झूमर टांगा हुआ है।

कुछ नीचे मैट बिछाया हुआ है मैट ग्रीन कलर का है।

दो लड़की है जो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुई है।

यहां पर कई सारा फायर ब्रिगेड वाला गाड़ी लगाया हुआ है जो रेड कलर का है सारे।

उसमें सायरन लगाया हुआ है रेड कलर का।

ऊपर आसमान साफ है एक जगह पे फूल लगाया हुआ है फुल पर्पल कलर का है।

रंग बिरंगे बैलून लगाया हुआ है बैलून का कलर पीला है ब्लू है वाइट कलर का है बगल में सीढ़ी बनाया हुआ है।

एक काउंटर पर कंप्यूटर रखा हुआ है काउंटर ब्लू कलर का है।

पत्थल फेक हुए हैं अगल बगल बहुत सारे घर हैं।

पंखा चल रहा है तार कनेक्ट है।

अंदर में कई सारा गाड़ी लगाया हुआ है गाड़ी के ऊपर सायरन लगाया हुआ है।

गेट के पास परदा लगाया हुआ है जो ग्रीन कलर का है।

ऐ सी लगाया हुआ है कई सारे लाइट जल रहे हैं तार लगाया हुआ है इधर उधर।

झुमर टांगा हुआ है लाइट लगाया हुआ है रंग बिरंगे का।

बगल में बिल्डिंग्स एक गार्ड खड़ा है बाहर में।